यहां पर यह लोग जो हमें दिखाई पड़ रहे हैं यह छठ घाट पर अब जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है।

क्लिनिक सेंटर में ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। हेल्थ डायग्नोस्टिक्स ।

यह जो शॉप दिखाई पड़ रही है वहां ऊपर ही लिखा हुआ है कार एसेसरीज आर्ट होम ।

कुछ लोग हैं जो कि यहां पे बैठे हुए हैं इन सब को--

दो तकिए भी है एक तकिया का कवर थोड़ा सा निकल गया है एक साइड से।

बोर्ड भी लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है हमको।

तो पेट्रोल भर रहे होंगे और दूसरे व्यक्ति गाड़ी पर बैठे हुए हैं और अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं।

पीने के लिए औड़ भी सामाने रखी हुई दिख रही हैं।

यहां पड कुछ पड़दे रेड कलर में टंगे हुए गेट पर दिख रहे हैं।

और ऊपर पंखे जो लगे हुए हैं और लाइट्स भी दिखाई दे रहे हैं कुछ टेबल पर बैग्स रखी हुई हैं।

यहां हमें बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है यह--

और यह गाड़ी यहां पे खड़ी है इसके इर्द गिर्द कुछ लोग भी हैं और पीछे एक बड़ा सा--

बिकते हैं यहां रखा गया जो फोन का डब्बा है।